यहाँ शादी-उदी का फंक्शन है| बहुत ही सारे लोग हैं महिलाये हैं और एक लड़का है बहुत ही अच्छे से सजाये हैं।

होटल में एक फ्रिज है फ्रिज में बहुत ही ठंडे रखे हुऐ हैं| होटल में एक तराजू है।